और यह दृश्य बहोत दूर से लिया गया है।

बहोत अच्छी दिखाई दे रही है नहीं लटकाया गया है किसी नेक में--